यह एक बिल्डिंग बन रहा है जिसके सामने से पूरा बांस लगा हुआ है जिसपर से मजदूर चढ़ के काम करते है और इस बिल्डिंग के नीचे एक बाइक लगा हुआ है।

यहाँ पर एक नदी का सीन है जहाँ पर कुछ लोग अंदर में है और एक सीमेंट का कुछ टीला बना है।

और यहाँ पर धूप के साये आ रहे हैं और ये काफी जादा लग रहा है।

और इसके बगल में पेड़ है जिसकी टहनी पतलियां है और पत्ते है जो हरे रंग का है और इस सड़क पर दूर एक इंसान है जो खड़ा नजर आ रहा है।